इस तस्वीर में मुझे दो पानी के बोतल दिख रहे है इस तस्वीर में मुझे एक कबर्ड दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक कुत्ता दिख रहा है इस तस्वीर में मुझे एक बाल्टी दिख रही है।